जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह घर गुलाबी और सफेद रंग का है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक अस्पताल है और अस्पताल में बहुत से डॉक्टर बैठे हैं जिनमें से चार --

दुकान है दुकान के ऊपर तीन ए_सी भी लगे हुए हैं और दुकान के बाहर तीन चार स्कूटी भी हैं और एक --

योगा कर रहे है जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे है और आसपास --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक रूम है रूम के अंदर एक बेड है।

जैसाकि मैं देख पा रहा हूँ --

बैंगनी कलर की गाड़ी चल रही है और सड़क के किनारे काली और ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक मोबाइल की दुकान है मोबाइल की दुकान में --